इस फोटो में हमें सामने ही सेफ्टी रिलायबल अफॉर्डेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक्सपर्ट क्यूटोगन एक्सपर्ट एन एम दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस इसके पीछे हमें काफी सारे कुछ पत्थर टाइप रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे में कुछ हुआ दिखाई भी दे रहा है उसकी साइड में एक कार और खडी हुई है।

और साइड में दो तीन ढोल वाले भी खड़े हुए हैं जोकि ढोल बजा रहे हैं साइड में एक व्यक्ति येलो कलर की टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

जो कि किसी गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं नीचे गोल गोल बना हुआ है गोल गोल के अंदर एक कुछ गोल गोल सामान और रखा हुआ है कुछ पानी की बॉटल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे सामने ही एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके प्रबंधक एम एल सैनी जी है और उनके सामने उसका नंबर भी लिखा है नंबर जो सत्तानवे अठावन सेंतालिस बारह छियासठ लिखा हुआ है।

इन बच्चों को देख रही है।